जिसके ऊपर फूलों की माला लगी है।

इसमें एक लकड़ी की फिटिंग बनी हुई है।

और कुछ हरे हरे पेड़ लगे हुए है।

इसमें कांच की बनी है।

यहां कुछ लोग बैठे हुए हैं।

यहां एक कलश की तरह कुछ बना हुआ है।

यहां कुछ मशीनें रखी हुई हैं।

और उसमें कॉपी किताबों का व आदि समान रखा हुआ है।

यहां कुछ रंग बिरंगी चटाई पड़ी हुई है।

एक आदमी ने हेलमेट लिया हुआ है और इसके पास एक जीना चढ़ा है।